यह तस्वीर एक बिल्डिंग की है जिसका रंग सफेद है और साइड में यहां पर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं।

है यहां पर कुछ लोग सफेद रंग के कबड़े लगाकर खड़े हैं।

एक पारक भी है और पीछे एक सफेद रंग।

की बिल्डिंग है यहां पर काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां पर एक कुआं भी है।

पेड़ लगे हुए है यहां पर एक आदमी चल रहा है यहां पर--

पीछे साइड भी काफी सारे पेड़ हैं ये मिट्टी का आंगन है।

ये तस्वीर एक बिल्डिंग की है जहाँ पर कई सारी मोटरसाइकलें --

बहुत सारे आदमी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

फोन है और दूसरी लड़की स्माइल कर रही है पीछे से एक लड़का बाइक चला रहे हैं और पीछे से गुब्बारे वगैरा भी है।

लगे हुए हैं यहां पर काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

और यहां पर हर रंग के कबडे मिलते हैं।

मिलते हैं यहां पर विकेट्स भी है और बॉले भी है।

यहां का टेबल का कलर रेड कलर का है।

यह तस्वीर एक जिम की है यहां पर काफी सारे मशींस लगे हुए हैं।

पेड़ भी है यहां पर इन पत्थरों पर सफेद रंग के चॉक से लिखा हुआ है।

चंद्र बोस रानी लक्ष्मी बाई की फोटो भी लगाकर है यहां पर डॉक्टर बी_आर अंबेडकर की भी फोटो है।

और यहां पर भगवान की भी फोटो है और यहां पर एक ग्लोब की भी फोटो है।

वाइट और ऑरेंज है यहां पर कई सारे आदमी खड़ा है।

काले रंग के मार्बल लगे हुए हैं पीछे से यहां पर सफेद रंग।

यह तस्वीर कंप्यूटर की है जहां पर आगे दो।

यह तस्वीर एक बाग की है जहां पर एक औरत पाइप लेकर पानी डाल रही है।

इस पाइप का कलर ग्रीन कलर का है यहां पर एक बड़ा--

यह तस्वीर एक जिम की है जहां पर काफी सारे मशीनें हैं यहां पर।

शीशे वगैरा भी है नीचे से इस जिम को फ्लोरिंग करके हैं यहां पर--

यहां पर कई किस्म के बैग्स लगे हुए हैं।

जो कि बच्चे अपने स्कूल लेते हैं यहां पे।

यह तस्वीर एक बड़े हॉल की है जहां पर सफेद रंग के सोफे लगे हुए हैं।

यहां पे पीछे से पेड़ भी है।

यहां पर हर किस्म की घड़ियां मिल रही है।

और सामने यहां पर गाड़ियां भी लगी हुई है।

चेयर्स वगैरह हैं जिनमें से लकड़ी की चेयरें भी हैं।

यहां पर कुछ आदमी फोटो भी ले रहे हैं।

यह तस्वीर एक गिफ्ट शॉप की है जहां पर काफी सारे टॉय .